ये एक नाई की दुकान है यहां बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं।

एक घर है घर के अंदर एक बैड लगा हुआ हैं और बोहोत सुंदर बाटी के --

यहाँ एक इमिग्रेशन ऑफिस हैं। सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

फूलों के हार यहां टंगे हुए हैं।

एक लेंटर डाल रहे हैं लेंटर पर--

आसपास बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं।

बर्गर की फोटो भी लगी है और कुछ लिखा है।